कुछ गायें बैठी हैं कुछ इधर उधर चल रहीं हैं।

यह एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है ऑफिस रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक लड़का कुर्सी में बैठा दिखाई दे रहा है जो काम कर रहा है।

कुछ ईंटें पास मे रखी दिखाई दे रही हैं सीढ़ियां लगी दिखाई दे रही हैं पास में लाल कुर्सियां पड़ी हुई दिखाई दे रही है जिनपे रस्सी रखी है।

पिंक ऑरेंज ग्रीन रेड दिखाई दे रहा है और--

इस फोटो में दो गधे दिखाई दे रहे हैं गधों के मुंह के कलर आगे से वाइट और पीछे से राख कलर है।

टेबल रखे हुए हैं और कुछ लाइटें जल रही हैं और सामने कुछ शॉप दिखाई दे रही है एक शॉप के बाहर नगिना लिखा हुआ है और अ उसके बाहर में एक --

यहां पर एक बड़ा किला दिखाई दे रहा है जिसके बाहर चबूतरे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं चबूतरों पे धूप लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक क्रिकेट पिच बनी हुई दिखाई दे रही है।